एक बहुत बड़ा हॉल नजर आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारी चेयर रखी हुई है जो कि सभी लाल कलर की है।